ट्रांसफार्मर है लाइट है।

एगो दुगो तीनगो चारगो पांचगो छगो सातगो आटगो नोवगो दसगो ग्यारहगो बहुत बड़का ट्रांसफार्मर हई पूल हई एगो दुगो तीनगो --